ये कोई गोडाउन के जैसा लग रहा है जिसके बाहर में एक स्कू-- स्कूटी खड़ा किया हुआ है और--

येये कुछ गाँव के जैसा लग रहा है गाँव के अन्दर एक गाड़ी है और--

ये कोई पार्क के जैसा लग रहा है जहाँ जिसको देख कर बहोत ही अच्छा लग रहा है इतना सुन्दर एकदम दिख रहा है ।

पेड़-पौधे दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है और एक दो ठो पेड़ है तो एकदम काला-काला नज़र आ रहा है।

एक महिला और एक आदमी फोटो खिचवा रहे हैं एकदम बहुत ही अच्छा मूर्ति है उसके सामने ये दोनों फोटो खिंचवा रहे है और बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया है शादी--

ये कोई बाड़ी के जैसा लग रहा है जहाँ पे कुछ लगाया हुआ है एकदम बहोत ही हरा-भरा दिख रहा है।

पड़ोसी भी आए है बैठे हुए है लगता है यहाँ पे कोई प्रोग्राम होगा बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है एकदम और --

अउ बहुत सारा आदमी आया हुआ है।